घर का ग्रीन ग्रीन कलर पुता हुआ दिख रहा है।

यह एक स्विमिंग पूल का फोटो दिखाई दे रहा है।

साइड में बहोत से पेड़ पौधे भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो एक किसी जंगल का फोटो दिखाई दे रहा है।

पीछे आसमान भी दिखाई दे रहा है जिसमें थोड़े थोड़े बादल है।

यह फोटो में बहोत सी क्रेन मशीन रखी दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में एक पक्षी विहार का बोर्ड दिखाया गया है ए फोटो एक पक्षी वन पक्षी विहार का फोटो है।

और पीछे कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है दीवाल पर छाप नहीं है ईंटे दिखाई दे रही हैं।